यह फोटो रात का लगता है इस फोटो में कुछ लाइटिंग भी जलती दिखाई दे रही है।

यह फोटो किसी मंदिर के गेट के बाहर से लिया गया है।

और एक बड़ा बोर्ड भी लगा है जिस पर अमन गारमेंट्स लिखा हुआ है और एक कांच का गेट भी दिखाई दे रहा है।

यह फोटो किसी मॉल के सामने से लिया गया है।

और सामने की ओर दो व्यक्ति पड़े भी है।

और कुछ और भी लोहे की मशीनें दिखाई दे रहे हैं।

पीछे कुछ लाइटिंग का प्रोग्राम किया गया है साइड में कुछ रखा हुआ है।

यह फोटो किसी सड़क के किनारे से लिया गया है इस फोटो में एक सड़क के किनारे इको कार खड़ी दिखाई दे रही है।

और साइड में कुछ डस्टबिन भी रखे हुए हैं कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

सामने की ओर एक मास्टर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

डूबता हुआ दिख रहा है पानी में भी सूरज की परछाई दिख रही है।

इस फोटो में एक बड़ी मूर्ति दिखाई दे रही है और दो साइड में भी मूर्ति दिख रही है।

ये अलग अलग सर्कल में भाग रहे हैं।

इसमें काफी सारे इनवेर्टर और कुछ बैटरे रखे हैं कुछ बैटरे--

दीवार पर एक पक्षी के पंख भी बने हैं और छत पर कुछ लाइटिंग बल्ब लटके हैं।

टीन पर नीला कलर कर रखा है धरती पर हरे कलर का फरस है बीच में एक जाल लगा है।

कुछ लड़के अंदर ले साइड को जाते दिख रहे हैं और एक लड़का इनकी --

यह फोटो किसी ऑफिस से लिया हुआ लगता है।

बाकी और कुछ स्कूटी और कुछ बाईकें भी खड़ी हैं सड़क पर एक साइकिल जाती हुई दिखाई दे रही है।

इसमें कुछ मशीनें रखी दिखाई दे रहे हैं और कुछ कुर्सियां भी दिखाई दे रहे हैं।

हैं और एक डेमो के मुंह को ब्लर भी कर रखा है।

और छत पर कुछ लाइटिंगें भी टंगी दिखाई दे रही हैं सामने की ओर एक घड़ी भी टंगी है।

यह फोटो किसी चर्च से लिया गया है जिसमें एक महिला एक मंच पर भाषण देती दिखाई दे रही है।

दुकान के ऊपर एक बड़ा पोस्टर लगा हुआ है।

और बाहर की ओर कुछ कार खड़ी दिखाई दे रही है कुछ पेड़ भी दिख रहे हैं।

यह फोटो किसी परचून की दुकान या मॉल से लिया गया है।

किसी पर तीन सौ पच्हतर किसी पर तीन सौ पचपन और किसी पर तीन सौ नीन्यानबे और किसी पे दो सौ नीन्यानबे लिखा है।